ओर पुल से रास्ता भी है जो की इस मार्ग को मिलता है यह पुल और काफी लोहे से बना हुआ है।

काफी लंबा दिखाई दे रहा है ऊपर लाइट्स लगे हुए हैं नीचे टाइल्स लगी हुई है और अगल-बगल में रूम है जो यहाँ पर बहुत सारे हैं।

यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो की काफी सारे व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो की महाराष्ट्र पर्यटन राजधानियां औरंगाबाद मध्य--

इस फ़ोटो में हम लोग भी देख रहे हैं जो की यहाँ पे हम देख सकते है।

यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस फोटो मे जो की का काम चल रहा हैं यहाँ पे और यहाँ पे दो तीन--

यहाँ इस फोटो मे हम लोग देख रहे जो कि यहाँ पे एक हेलमेट है और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो--

--जोकि अ दो कलर की ड्रेस पहने हुए हैं अलग अलग टीम के खिलाड़ी है जो कि मैदान में है।

यहाँ इस फोटो मे हम लोग देख रहे हैं जो की किसी नदी किनारे का फोटो है जिसमे यहाँ पे एक फूल दिखाई दे रहा--

एक व्यक्ति और एक महिला दिखाई दे रहे हैं जो की भैंस है यहां पर देख सकते हैं वो भैस नहीं है गाये है जो काली है।

और यहां देख सकते हैं हम लोग मैदान में काफी सारी चीजे दिखाई दे रही है। यहाँ पे--